जहां तीन चार पिलर्स दिख रहे हैं।

आदमी सफेद कलर की शर्ट --

वाइट शूज पहने हुए दिखाई दे रहा है उसने चश्मे भी लगाए हुए हैं।

योगशाला की फोटो दिखाई जा रही है जहां एक काले कलर की पंचिंग बैग है।

भूरे कलर की योग करने की मशीनें हैं।

इस तस्वीर में हमें एक--

और उस पे दो-तीन आदमी चल रहे हैं ऊपर रोशनी लगी हुई है और देखने में काफी मनमोहक दृश्य है।

कई प्रकार की मिठाइयाँ दिखाई दे रही है कई जलेबी है कई रसमलाई है कहीं लड्डू है।

ये तस्वीर एक कमरे की है जहां दो बेड लगी हुई है।

कई सारे टेबल लगी हुई है।

लोगे बैठेंगे गुफ्तगू करेंगे--

फिर होटल जाके करेंगे--

जिन्होंने अपने मुंह पर मार्क्स लगाया है।

और कई सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

अअलाइट्स लगी हुई दिख रही है।

जहां तीन लाल कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

माथे पे बोझ उठा रहा है।

पीली कलर की है उसके पीछे हर कलर की पौधे लगी हुई है।

सड़क दिखाई गई है जिसके ऊपर--

एक ऑटो चल रही है।

इस तस्वीर में हमें एक रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई जा रही है जहां एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है।

बोरा में कचरा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं एक गाड़ी है जो हरे रंग की है।

काले कलर की पैंट टोपी और शूज पहने हुए दिखाई दे रहे --

अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक ग्लोसरी दुकान की है।

पीछे बहुत सारे बिस्किट्स चॉकलेट्स --

जो एक कमरे में खड़ी है।

लाइट्स टिम है--

जो हाथ उठा के योग कर रहे हैं।

यह तस्वीरएक गिटार --

और तो तबला है।

यह तस्वीरएक इमारत की है जो--

बिल्डिंग की है जहां मोटी ढावा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो झंडे हैं राम जी की --

यह तस्वीर एक गिफ्ट शॉप की है।

कुछ आदमी --

प्लसतर बिछा रहे हैं दो --

छड़ लगा के खड़ी किए हुए हैं मिट्टी काढ़ के अंदर कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है।

यह तस्वीर एक कमरे की जहां एक टी_वी दिखाई दे रही है।

उनके साथ एक सहयोगी महिला है जो--

काफी सारी मछलियां एक पन्नी में रखी गई है।

और मछली काफी सुंदर लग रहा है।

यह तस्वीर एक सलून शॉप की है।

बहुत सारे बैलूंस लगाई गई हैं।

तीन चार कुर्सियां रखी हुई है।

जहां एक चार्जर सर्किट में लगाई गई है।

यह सफेद कलर की इमारत हे ।

स्कूल दिख रहा है पटना हाई स्कूल लिखा हुआ दिख रहा है।

बगल में एक पैर है बड़ा सा--

छोटी-छोटी पैर-पौधे भी हैं।

यह तस्वीर एक जंगल की है।

और लाल लाल कलर की फूल है छोटी-छोटी एक व्यक्ति खरा होके बेच रहा है।

बहुत सारी बच्चियां रंगोली बनाती हुई --

यह तस्वीर एक जिम क्लास की है जहां --

दो-तीन लड़कियां पैर ऊपर करके--

यह तस्वीर एक जनरल स्टोर की है ।

और कई सारे चॉकलेट्स की डिब्बियां भी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है।

यह तस्वीर एक फल की दुकान की है जहां--

और ढेर सारी चीजें भी रखी गई हैं खाने को--

यह तस्वीर देखने से एक कॉफी शॉप लग रही है।

जहां ढेर सारी टेबल प्रेंचेस लगाई गई हैं।

और बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है नीचे से एक व्यक्ति देख रहा है।

इस तस्वीर में एक कॉलेज की तस्वीर दिखाई गई है जो कि फ्रेशर पार्टी कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ दस तारीख को खत्म हो गई थी।

फूल दुकान की है जहां रंगबिरंगे फूल --

काफी मनमोहक दृश्य रहा यह धन्यवाद--

यह तस्वीर किसी मेले की दिखाई दे रही है जहां--

आग जलाई गई बहुत सारी भी लगाई गई माते पे गमछी बान के बिहारी बन रहे हैं ये--

और काफीसुंदर दिखने में लग रहा है।

यह तस्वीर में कुछ व्यक्ति बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं।